यहां पे पहाड़ है जो बहोत ही बड़ा है इस पे छोटी छोटी घास उगी हुई है।

यहां टेंट भी लगी हुई है टेंट के पर्दे भूरे और सफेद है।

एक छोटा सा मकान और है जिसपे ईंटें और बालू लगी हुई है।

यहां पे एक पोस्टर लगा हुआ है बड़े बड़े लाइट के खंभे दो लगे हुए हैं।

यहां पे एक मैदान है जहां पे हरी हरी घास उगी हुई है।

यहां पे एक घर है जो सफेद और नीली पटी रंग का है।

यहां पे बहुत बड़ी बड़ी मशीने हैं पीछे एक बैठक बना हुआ है।

यहां पे एक घना जंगल दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

यहां पेड़ है एक सुख दिखाई दे रहा है बहोत सारे गमले हैं।

सामने एक टी_वी लगी हुई है नीचे एक लाइट का बोर्ड है।